यहां पर हमें एक दीदी जी के पौधों को पानी देती हुई दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर हमें एक चर्च का दृश्य दिखाई दे रहा है।

शायद एक घर की छत है यहां पर कई कमरे खिड़कियां वे दरवाजे हैं।

यह हमें कोई प्रसिद्ध मंदिर दिख रहा है क्योंकि यहां पर--

इसने सफेद रंग की टी शर्ट नीले रंग की पैंट और काले रंग के जूते पहने हैं।

एक सुनार की दुकान दिखाई रही है।

ऐसा है पोस्टर दिख रहा है जिससे हमें पता चलता है।